ईसाई लोग अपने धार्मिक अनुष्ठान गिरिजा घर मे करते हैं। गिरिजा घर में ईसा मसीह की एक विशाल फ़ोटो लगी होती है। ईसाई धर्म के लोग --

विद्या अर्जित करने आते है और इस स्कूल का गेट काला कलर का है।

है इसकी शाखा बदायू है यहाँ पर लोग खाता खुलवाने आते है।

यह एक लॉन है। यहा पर कोई फंकशन चल रहा है।

ए इस पर रेड एंड ब्लू कलर से पैंट किया गया है कुछ-कुछ इसके सामने रेड कलर का गुलाब भी दिखाई दे रहा है।

बाहर और यहाँ पर एक जयमाला खड़ म-म जयमाला टंगी हुई दिखाई दे रही है।

बहुत से लोग पूजा करते हुए दिखाई दे रहे हैं बहुत से लोग गंगा के किनारे खड़े हुए दिखाई दे रहे है।

यहाँ पर एक स्कूल दिखाई दे रहा है स्कूल का नाम द्रौपदी देवी सरस्वती विद्या मंदिर है।

यहां पर एक बैंक दिखाई दे रही है। बैंक का नाम एसबीआई बैंक है।

यहाँ पर एक जिम दिखाई दे रही है यहाँ पर लोग एक्सर्साइज़ करने आते है एक्सर्साइज़ करने से --

जो एक्सर्साइज़ कर रहे है और कुछ लड़के सेल्फ़ी ले रहे है।

आदि दिखाई दे रही हैं टेबल चैयर को बहौत अच्छे से मैंनेज करके रखा गया है उनपे बहौत अच्छे से कवर --

बराबर मे कुछ साउंडस रखे हुए दिखाई दे रहे है।